हरे कलर के घास लगे हुए हैं और बड़े-बड़े पेड़-पौधे हैं।

बिल्डिंग के बाहर तीन गाड़ियां दिख रही है एक लूना है और दो स्कूटी एक काले कलर का हेलमेट भी है।

ज्यादातर बड़े कप सफ़ेद कलर के हैं उसमें किसी में क्रॉस का निशान बना है किसी में स्क्वायर बना हुआ है किसी में फूल बना हुआ है किसी में काले कलर की धारिया बनी हुई है।

और एक आदमी जिस जो रेड कलर की टी-शर्ट और ब्लू कलर की जीन्स और व्हाइट कलर का शूज पेहेन के अपनी बॉडी दिखा रहा हैं।

जिन्हने एक ने सूट पहना हुआ है एक ने साड़ी पेहनी हुई है।

और बहुत से धागों से डिज़ाइन बनाया गया है।

लाल कलर के फ्रिज में कोको कोला लिखा हुआ --